ठीक है हम यहां पे काफी सारे लोग खड़े हैं जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

इस फोटो में एक लड़का दिखाई दे रहा है जोकि काले रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं।

यहां पर काफी सारे बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।